और इस चित्र में कुछ मकान है जो कि बहुत पीछे हैं इन मकानों पर सफेद कलर का पेंट हुआ है और इस व्यक्तिने नहीं लाल कलर के।

इन बच्चों ने तीनों ने जूते पेहन रखे हैं जिनमें से एक बच्चे ने नीले कलर --

और इसके बराबर में एक पेड़ है जिसकी जड़ जड़ दिख रही है और उनकी पत्ती बड़ी बड़ी हो रही हैं।

और इसकी फर्श में टाइल लगी है और इस चित्र में एक बैग रखा है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी रूम का है।

इस पानी की ट्यूबवेल मे से पानी निकल रहा है इसका रंग अद्भुत है।

इस चित्र में एक मंदिर है इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जिस का रंग पीला है।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है यह व्यक्ति किसी छतरी के नीचे खड़ा है।

और एक एक्टिवा खड़ी है एक्टिवा का रंग महरून कलर का है और बाइक का रंग काले कलर का है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी बैंक का है।

कुछ बस है इन बसों की संख्या पांच है इन पांचों बसों पर पीले कलर का पेंट हुआ है।